और एक व्यक्ति यहाँ से गाड़ी पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लाइट का वायर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिख रहा है जिसके ऊपर सफेद कलर की टंकी रखी हुई है। आस-पास खेत दिखाई दे रहा है जिसमें घासें भी लगी है।

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रही हे जो कि फरोजी और सफेद रंग की है।

और कुछ लोग यहाँ पर ढ़ोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो की हरे रंग के हैं और गमले दिख रहे हैं। भी दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग से पोता गया है ऊपर की ओर यहां पर प्लस का साइन भी दिखाई दे रहा है।